हरा पत्ता पेड़ पोधा बहुत अच्छा मस्त दिखाई दे रहा है नीचे फर्श भी और लंबे पेड़ पोधे भी अच्छे दिखाई दे रहे है और आकाश सफेद मस्त दिखाई दे रहा हैं।

अउ ए सफेद कलर अउ भूरा कलर टाइप से हे ओहा भी बढ़िया हे अउ खरा छीचली टाइप हेओहु बढ़िया हे ।